बच्चे कार्ड शीट फेविकोल और कलर रखे हुए दिखाई दे रहे है और दो तीन मडैमे बैठी हुई दिखाई दे रहे।

इस इमेज में मुझे एक सरस्वती देवी की मूर्ति दिखाई दे रही है और एक लड़का जो की सरस्वती जी के पैर पड़ रहा है वह दिखाई दे रहा हैं।

इस इमेज में हमें गेराज दिखाई दे रहा है जिसपे एक म्म- व्हाइट कलर कि म्म- कार टंगी हुई है और एक आदमी उसे धो रहा है और स्टक चला रहा है उसके ऊपर ।

औरत दिखाई दे रही है। और बाहार बहुत सारे मोटरसाइकिल रखे हुए दिखाई दे रही है। और पेड़ दिखाई दे रहे हैं ।

इमेज पर मुझे एक आदमी छत पर की न घर की बालकनी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है जोकि सेल्फ़ी ले रहा है और पीछे का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है पेड़ दिखाई दे रहे है नीचे एक टीन शेड सा बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है।

दुकान दिखाई दे रही है और बीजली के खंबे दिखाई दे रहे हैं और तार--

इस इमेज में मुझे एक दो गमले दिखाई दे रहे है दीवाल दिखाई दे रही है और एक दौ तीन चार पांच बच्चे लड़के बैठे है जो कि टेप रखे है कागज रखे है कैंची रखे है फेवीक्विक रखे हुए हैं कुछ बना रहे है एक बच्चे मार्क्स लगा --